पोस्टर है जहाँ पे सेंडिल का जूता का जूस वुस का पिक दिख रहा है। उसके बाद उसके बगल हमे एक मोटर साइकिल दिख रही है उसके बाद इधर अन्दर जाने वाला सीढ़ी है। यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आदमी नहीं --